इस फोटो में मुझे कॉटन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे टेबिल कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पर्दा दि--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

फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पत्थर की चट्टानें दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे बाइक दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे लोहे का पिलर दिखाई दे रहा है।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

दुकान दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे--

इस फोटो में मुझे बिजली के खंभे दिखाई--